यह एक फूलों का बगीचा है जिसमें गेंदे के फूल दिखाई दे रहे हैं।

सामने से आता हुआ ऑटो दिख रहा है जो कि पीले रंग का है।

इसमें सामने की तरफ हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है।

ऊपर की तरफ पिंक रंग की लाइट लगी हुई है।

सामने की तरफ दो मोटरसाइकिलें दिखाई दे रही है जिसके पास एक आदमी खड़ा हुआ है।